एक रेस्टुरेंट की तस्वीर हैं।

दो या तीन डि.जे. हैं।

और नीचे धा एक कुण्ड भी दिखाया गया हैं।

दो चिम्मच अगल-बगल रखे गए हैं।

जिसमें कुछ बच्चे अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं।